ज्यादातर वृद्ध दिखाई पड़ रहे है।

यह किसी लग्जरी होटल का रूम दिखाई पड़ रहा है।

रेस्टोरेंट काफी लक्ज़री लग रहा है।

किसी मैदान में लड़कियों का क्रिकेट चल रहा है यहां पर लड़कियां क्रिकेट खेल रही हैं।

अपने स्वास्थ्य को सही बनाए रखने के लिए अपने शरीर को सुडौल बनाए रखने के लिए जिम करने जाते हैं।

भारत के उत्तर प्रदेश के अह की राजधानी लखनऊ का भारत खंड संगीत संगीत संस्थान विश्वविद्यालय है।

और यहां पर आकर लोग अपनी जरूरत की चीजों को खरीदते हैं जिस पे उनको छूट भी दी जा रही है।

ये नर्सरी के गमलो का चित्र है।

यह किसी शादी समारोह में अह दूल्हा दुल्हन के लिए बैठने के लिए सोफा दिखाई पड़ रहा है।

बहोत ही सुंदर सोफा दिखाई पड़ रहा है जिसपे कपल्स जो होते हैं बैठते हैं।

लखनऊ मेट्रो स्टेशन का चित्र दिखाई पड़ रहा है।

उसका भी चेहरा पूरी तरीके से ब्लर कर दिया गया है चेहरा स्पष्ट नहीं है लड़के का जो कि ऊपर जा रहा है।

बहुत ही सुंदर डेकोरेशन है यहां का भी।

जैसे टूथब्रश है और शैंपू है। कोकाकोला है मतलब पेप्सी है।

पंजाब नेशनल बैंक के सामने का चित्र ये दिखाई पड़ रहा है।

जिनका दृश्य बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ रहा है एक आदमी जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है बच्चे कुछ बच्चे उधर खेलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं।

इस पर एक बड़ा सा पुल बना हुआ है।

नदी में एक भी नाव नहीं दिखाई पड़ रही है।

नीचे मैदान काफी बड़ा पड़ा हुआ है जिसमें काफी शांति है और वहां पर कोई नहीं है अभी।

जहां पर लोग अपना पैसा निकलवाते हैं।

और अगर त्व त्वरित किसी को उम्म पत्र भेजना हो तो पहुंच जाता है।

एक आदमी वहां पर खड़े हुए देख रहा है।

यह किसी गार्डन में स्थित बहुत सुंदर जलाशय का चित्र है।

खूब हरे भरे पेड़ दिखाई पड़ रहे हैं।

की बहोत ही सुंदर बना हुआ है।

दृश्य बहुत ही सुंदर है शांतिपूर्ण है और बहुत ही सुंदर दृश्य दिखाई पड़ रहा है।

और पीछे दुकान के पीछे पेड़ लगे हुए हैं।

किसी दुकान का चित्र है।

ऐसा लग रहा है कि तुरंत ही इसका उद्घाटन कराया गया है।

स्पष्ट समझ में नहीं आ रहा कि यह क्या है लेकिन ऐसा लग रहा है यह किसी समारोह का चित्र है।

यहां पर नाई किसी के हेयरकट अथवा दाढ़ी बनाने का काम कर रहा है।

कुल मिला के यहां पर तीन से चार लोग दिखाई पड़ रहे हैं।

जोकि रोड का चित्र दिखाई पड़ रहा है।

हेयरकट करवाने अन या कुछ और कराने गया हुआ है।

यह किसी प्राचीनतम मंदिर का दृश्य दिखाई पड़ता है।

लोगों की बहुत बड़ी संख्या है यहां पर।

जो की दर्शन के लिए जा रहे हैं।

यह बुद्धेश्वर महादेव मंदिर है।

इसके जस्ट बगल में एक बरगद अथवा पीपल का पेड़ लगा हुआ है।